पीछे एक अंकल देख रहे हैं एक आंटी चेयर पे कुर्सी पे बैठी हुई है एक अंकल हाथ बांधे खड़े हुए हैं पीछे एक आंटी हैं यहाँ पर दूध का डब्बा रखा हुआ है।

एक अंकल पीछे रुमाल डाल के खड़े हुए हैंपीछे एक टेंपो आ रहा है बहोत सारे लोग रोड पे खड़े हुए हैं अपना सामान लेकर और बहुत सारी ट्रक पीछे निकलने को पेड़ है एक ओ बहोत बड़ा पेड़ भी है |

यहाँ पीछे एक चर्च बना हुआ है जहाँ बहुत सारे बैलून हैं कुछ बच्चे खड़े हुए हैं सामने आंटी हैं येलो कलर की साड़ी पहन के खड़ी हैं और अपना फोटो खिंचवा रही हैं पिंक कलर की पूरी लाइटस जल रह हैं।

एक आंटी चश्मा लगाई हैं वो क्लैपिंग कर रही हैं और उनके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो सोल डाले हुए हैं और ओ जो चर्च वाले फादर जो है उनके पास फोन है।

और बहोत सारा पानी है पुल के नीचे वहाँ बहोत सारे लोग है कुछ हाथ में मटकी लेके जा रहे है और कुछ लोग वाप आ रहे है वापस और बहोत सारे डंडे पड़े है और बोर्ड भी है पीछे बहोत ज्यादा पानी है।

और शादी का हॉल है वी.एस लिखा हुआ है स्टेज बना हुआ है चेयर लगी हुई है चेयर्स कवर है।